खेतों में पानी भरा हुआ है वो फसले डूबी है ।

किनारे पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं व थोड़ी दूरी पर टावर व बिल्डिंगे हैं।

चर्च के ग्राउंड के आस-पास तार के मदद से बाउंड्री बनाई गई हैं किनारे पे पेड़ पौधों उगे हुए हैं थोड़ी दूरी पे बिजली के टावर व घर है।

बगल में मोदी इलेक्ट्रॉनिक शिल्फ़ की शॉप है तथा शॉप के अंदर काउन्टर पर बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैआस-पास बहोत सारी बिल्डिंगे और पेड़-पौधे है।

यह एक वृज है जिसके ऊपर से रेलवे ट्रेक निकला हुआ है व एक रेल गुजर रही हैं नीचे बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने है तथा घास उगी हुई है ।

एक चर्च है जहां अन्दर के साइड में एक प्लस आइकोन बना हुआ है तथा लाइट लगी हुई है।

एक चर्च है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग छज्जा बना हुआ हैं तथा प्लश का आइकन बना हुआ है।

एक स्कूल है जहां स्कूल की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रेलिंग बनी हुई है तथा ग्राउंड में घास उगी हुई है व किनारे पर अशोक के पेड़ लगे हैं।

एक व्यक्ति यहाॅं एक्सरसाइज कर रहा है।

तथा बगल में खिड़की हैं व आईने लगे हुए हैं बहोत सारे स्विच बोर्ड लगे हुए हैं।